शिमला मिर्च टमाटर गोभी नजर आ रही है अंदर की साइड में।

सामने ग्रीन कलर की पिनी पड़ी हुई है ऊपर कुछ वायर दिखाई दे रही है एक चेयर है सामने एक बोर्ड भी है।

एक रोड है रोड के सामने पंजाब नेशनल बैंक के दो--

रोड बनाने का कार्य चल रहा है दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने--

रूम है रूम में एक मेज पड़ी हुई है सामने एक अलमारी रखी हुई--

रोड है रोड पर दो कारें खड़ी हुई हैं उसके सामने--

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के सामने--

बिछी हुई है सामने की साइड में बेंचों पर एक आदमी बैठा हुआ फोन चला रहा है उसके बराबर में एक गेट नजर आ रहा है साइड में --

सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है कुछ पेड़ नजर आ रहे--

बहुत सी चेयर्स पड़ी हुई हैं सामने की साइड में दो आदमी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बोट पर एक आदमी दिखाई दे रहा है आदमी के हाथ में छड़ी है।

रखे हुए हैं दो आदमी दिखाई दे रहे हैं जिनके--

कुछ अपने कार कारों में तेल डलवा रहे हैं सामने--

पेट्रोल पंप पर सर्वो लिखा हुआ है सामने की साइड --

एक बाल्टी रखी हुई है सामने कुछ लिखा हुआ है वेज नॉन-वेज कैफे लिखा हुआ है।

रोड है रोड के किनारे दो बाइकें खड़ी हुई हैं सामने की साइड में कुछ--

पहाड़ी दिखाई दिखाई दे रही है कुछ अह पेड़ भी नजर आ रहे हैं कुछ लाइट्स है आसमान दिखाई दे रहा है।

का बोर्ड लगा हुआ है ऊपर नेहरू एंटरप्राइज --

प्लांट्स को देख रही है उसके बराबर दीवार पर एक बड़ा--

पहाड़ की चोटी दिखाई दे रही है सामने कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

बिजली के खंबे खड़े हुए हैं जिन पर कुछ लाइट्स के तार जा रहे हैं ।